सही महसूस हो रहा है ऐसा ही कुछ --

जोकि साथ लगा हुआ --

ये गुफा है। एक खड़ी गुफा है।

और कुछ धार्मिक उत्सव यहाँ पे बनाया जा रहा है।

प्रकृति का खुबसूरत नजारा ये देखने को मिल रहा --

और लग रहा है जैसे कुछ कटीली झडियां हो --